रिडाइरेक्शन और पाइप्स के बारे में इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रही हूँ
हम यह मानते हैं कि आपको पहले से ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी है और कमांड्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है
यदि आप इच्छुक हैं तो निम्नलिखित वेबसाइट पर यह दूसरे स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से उपलब्ध है
यह भी ध्यान रहे कि लिनक्स केस सेंसिटिव है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
लिनक्स में अधिकांश कार्य हम टर्मिनल के माध्यम से करते है
जब हम कमांड का निष्पादन करते हैं हम साधारणतः कीबोर्ड से टाइप करते हैं
मानिए कि हमें समय और दिनाँक पता करनी है हम केवल कीबोर्ड से डेट टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं अतः हम साधारणतः कीबोर्ड से इनपुट देते हैं
उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारी कमांड का आउटपुट टर्मिनल विंडो पर भी प्रदर्शित होता है
यह भी मानिए कि जब हम किसी कमांड को निष्पादित करते हैं कुछ एरर भी आते हैं उदाहऱणस्वरूप हम केट स्पेस एएए कैट स्पेस एए टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं
अब एएए नाम से कोई भी फाइल मौजूद नहीं है अतः वहाँ एक एरर प्रदर्शित होती है अब यह एरर टर्मिनल विंडो पर भी आती है इसलिए हम एरर रिपोर्टिंग टर्मिनल पर भी देखते हैं
अब इनपुटिंग आउटपुटिंग और एरर रिपोर्टिंग कमांड से संबंधित तीन विशेष कार्य हैं रिडाइरेक्शन के बारे में खीखने से पहले हमें दो महत्वपूर्ण सिद्धातों के बारे में जानना चाहिए
जो है स्ट्रीम और फाइल डिस्क्रीप्टर विवरणक
लिनक्स शेल जैसे के बैश इनपुट को ग्रहण करता है और अनुक्रम के रूप या अक्षरों की स्ट्रीम में आउटपुट भेजता है
प्रत्येक अक्षर इसके एक पहले या इसके एक बाद से स्वतंत्र होता है
स्ट्रीम्स तक फाइल आईओ तकनीकी का उपयोग करके पहुंचा जाता हैं
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्षरों की वास्तविक स्ट्रीम फाइल से आती है या फाइल में जाती है या कीबोर्ड विंडो आदि से आती है
लिनक्स में प्रक्रिया की प्रत्येक ओपनखुली फाइल एक पूर्णांक संख्या के साथ संयुक्त होती है
इस सांख्यिक वेल्यू को फाइल डिस्क्रीप्टर विवरणक के रूप में जाना जाता है
लिनक्स शेल्स तीन स्टैन्डर्ड आईओ iओ स्ट्रीम का उपयोग करते हैं इनमें से प्रत्येक सुपरिचित फाइल डिस्क्रीप्टर विवरणक के साथ संयुक्त होता है
एसटीडीआईएन स्टैन्डर्ड इनपुट स्ट्रीम है
यह कमांड को इनपुट उपलब्ध कराता है
यहाँ फाइल डिस्क्रीप्टर विवरणक शून्य है
स्टडआउट स्टैन्डर्ड आउटपुट स्ट्रीम है
यह कमांड से आउटपुट प्रदर्शित करता है इसके पास फाइल डिस्क्रीप्टर विवरणक वन है
एसटीडीइआरआर स्टैन्डर्ड एरर स्ट्रीम है यह एरर आउटपुट कमांड्स से प्रदर्शित करता है यहाँ फाइल डिस्क्रीप्टर विवरणक टू है
इनपुट स्ट्रीम्स प्रोग्रामों को इनपुट उपलब्ध करता है
स्वतः से यह टर्मिनल कीस्ट्रोक्स से लेता है
आउटपुट स्ट्रीम्स टर्मिनल पर स्वतः से टेक्स्ट अक्षरों को प्रिंट करता है टर्मिनल पहले एक अस्की टाइपराइटर या डिसप्ले टर्मिनल था लेकिन अब ग्राफिक डेस्क्टाप पर एक टेक्स्ट विंडो है
हमने देखा कि स्वतः से 3 स्ट्रीम्स कुछ फाइलों से जुड़ें हैं लेकिन लिनक्स में हम इस स्वतः व्यवहार को बदल सकते हैं
हम इन 3 स्ट्रीमों को अन्य फाइलों से जोड़ सकते हैं
इस प्रक्रिया को रिडाइरेक्शन कहते हैं
अब देखते है कि 3 स्ट्रीमों में रिडाइरेक्शन कैसे होता है
पहले देखते हैं कि स्टैन्डर्ड इनपुट कैसे रिडाइरेक्ट होता है हम ltलेफ्ट ऐंगअल ब्रैकिट ऑपरेटर का उपयोग करके फाइल से स्टैन्डर्डएन को रिडाइरेक्ट करेंगे
देखते है कैसे
हम जानते हैं कि डब्ल्यू सी कमांड का उपयोग फाइल में अक्षरों शब्दों और रेखाओं की संख्या जानने के लिए किया जाता है
टर्मिनल विंडो पर डब्ल्यू सी टाइप करें
अब एंटर दबायें
क्या होता है
हम ब्लिंगकिंग कर्सर पायेंगे इसका मतलब है कि हमें कीबोर्ड से एंटर करने की जरूरत है
कुछ टेक्स्ट एंटर करें थिस ट्यूटोरियल इस वेरी इम्पोर्टेंट यह ट्यूटोरियल बहुत महत्वपूर्ण है
अब एंटर दबायें
अब Ctrl और डी की साथ में दबायें
अब कमांड उन रेखाओं पर कार्य करेगी जिन्हें हमने प्रविष्ट किया है
कमांड टर्मिनल पर एक आउटपुट देगी
अब यहाँ डब्ल्यूसी कमांड के बाद कोई भी फाइल नहीं दी गयी है
तो यह स्टैन्डर्ड इनपुट स्ट्रीम से इनपुट लेगा
अब स्टैन्डर्ड इनपुट स्ट्रीम स्वतः से कीबोर्ड से जुड़ जाती है
इसलिए डब्ल्यूसी कीबोर्ड से इनपुट लेगा
अब यदि हम डब्ल्यूसी स्पेस लेफ्ट हैंडेड ब्रेकेट स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटी डबल्यूसी स्पेस left एंगल्ड ब्रैकेट स्पेस टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी लिखते हैं क्या होता है कि डब्ल्यूसी हमें फाइल टेस्ट1 टीएक्सटी में अक्षरों शब्दों और रेखाओं की संख्या बतायेगा
अब डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटीडबल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी टाइप करें हमें समान परिणाम दिखता है अतः फर्क क्या है
जब हम डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटी लिखते हैं कमांड फाइल टेस्ट1 डोट टीएक्सटी को खोलती और उससे रीड़ पढ़ती करती है
लेकिन जब हम डब्ल्यूसी स्पेस लेफ्ट ऐंगगल ब्रेकेट स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटीडबल्यूसी स्पेस left एंगल्ड ब्रैकेट test1टीएक्सटी लिखते हैं डब्ल्यूसी तब भी किसी फाइल को नहीं खोलता है
इसके बजाय स्टैन्डर्डइन से इनपुट लेने लगता है
अब हम स्टैन्डर्डइन को फाइल टेस्ट1 डोट टीएक्सटी में निर्देशित करते हैं
अतः कमांड टेस्ट1 से रीडपढ़ती करती है लेकिन वास्तव में पता नहीं है कि स्टैन्डर्डइन में डाटा कहाँ से आ रहा है
अतः हमने देखा कि स्टैंडर्ड इनपुट को कैसे रिडाइरेक्ट करते हैं अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर को कैसे रिडाइरेक्ट करें यहाँ फाइल के लिए आउटपुट या एरर को रिडाइरेक्ट करने के दो मार्ग हैं
मान लीजिए एन फाइल डिस्क्रीप्टर को संदर्भित करता है ngtनरेशन एन सिंगल राइट एंगल्ड ब्रेकेट फाइल डिस्क्रीप्टर एन से फाइल तक आउटपुट रिडाइरेक्ट करता है आपको फाइल को लिखने का अधिकार होना चाहिए
यदि फाइल मौजूद नहीं है तो बनाई जाती है यदि यह मौजूद है तो बिना किसी सूचना के मौजूद विषय वस्तुएँ सधारणतः लुप्त हो जाती हैं
एन डबल राइट एंगल्ड ब्रेकेट भी फाइल के लिए फाइल डिस्क्रीप्टर एन से आउटपुट रिडाइरेक्ट करता है
फिर से आपको फाइल को लिखने का अधिकार होना चाहिए
यदि फाइल मौजूद नहीं है यह बनाई जाती है यदि यह मौजूद है तो आउटपुट मौजूदा फाइल से संलग्न होता है
एन सिंगल राइट एंगल्ड ब्रेकेट या एन डबल राइट एंगल्ड ब्रेकेट में एन फाइल डिस्क्रीप्टर को संदर्भित करता है यदि इसे हटा देते है तो स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल डिस्क्रीप्टर1 माना जाता है
इसलिए gtराइट एंगल्ड ब्रेकेट 1जीटी के समांतर है लेकिन एरर स्ट्रीम को रिडाइरेक्ट करने के लिए आपको 2gtया 2जीटीजीटी का उपयोग करना पड़ेगा
अब इसे व्यावहारिक रूप में देखते हैं पिछले उदाहरण में हमने देखा कि फाइल या स्टैंडर्डएन में डब्ल्यूसी कमांड का परिणाम टर्मिनल विंडो पर प्रदर्शित होता है
क्या होगा यदि हम इसे टर्मिनल पर प्रदर्शित नहीं करना चाहते
हम इसे फाइल में स्टोर करना चाहते हैं
ताकि जानकारी बाद में इस्तेमाल की जा सके
स्वतः से डब्ल्यूसी अपना आउटपुट स्टैंडर्ड आउट में लिखता है
स्वतः से स्टैंडर्ड आउट टर्मिनल विंडो से जुड़ा होता है इसलिए हम आउटपुट को टर्मिनल में देखते हैं लेकिन यदि हम स्टैंडर्ड आउट को फाइल में रिडाइरेक्ट कर सके तो डब्ल्यूसी कमांड से आउटपुट को उस फाइल में लिखा जायेगा
मानिए कि हम डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटी राइट एंगल्ड ब्रेकेट डब्ल्यूसी रिजल्ट डोट टीएक्सटीडबल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डॉट टीएक्सटी right एंगल्ड ब्रैकेट wc रिजल्ट्स डॉट टीएक्सटी लिखें
और एंटर दबायें
अब देखें कि क्या यह वास्तव में हुआ हम wc results डब्ल्यूसी रिजल्ट डोट टीएक्सटी की विषय वस्तु को केट कमांड के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं
हाँ यह हुआ
मानिए कि हमारे पास उसी डाइरेक्टरी में टेस्ट2 अन्य फाइल है
अब हम फिर से टेस्ट2 फाइल के साथ कमांड निष्पादित करते हैं
हम डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट2 डोट टीएक्सटी राइट एंगल्ड ब्रेकेट डब्ल्यूसी रिजल्ट डोट टीएक्सटीडबल्यूसी स्पेस टेस्ट2 डॉट टीएक्सटी right एंगल्ड ब्रैकेट wc रिजल्ट्स डॉट टीएक्सटी टाइप करते हैं अतः डब्ल्यूसी रिजल्ट फाइल की विषय वस्तु अधिलेखित हो जायेगी
चलो देखते हैं
इसके बजाय यदि हम डब्ल्यूसी स्पेस टेस्ट1 डोट टीएक्सटी राइट एंगल्ड ब्रेकेट ट्वाइस डब्ल्यूसी रिजल्ट डोट टीएक्सटी डबल्यूसी स्पेस test1टीएक्सटी right एंगल्ड ब्रैकेट ट्वाइस wc resultsटीएक्सटी चलायें तो नई विषय वस्तु डब्ल्यूसी रिजल्ट डोट टीएक्सटी wc resultsटीएक्सटी फाइल की पहले से उपस्थित विषय वस्तु में अधिलेखित नहीं होगी यह संलग्न हो जायेगी
चलिए इसे भी देखते है
स्टैंडर्ड एरर रिडाइरेक्ट करना उसी तरह होता है
केवल फर्क यह है कि इस मामले में हमें gtया जीटीजीटी चिन्ह के पहले स्टैंडर्डएर्रर के फाइल डिस्क्रीप्टर की संख्या को उल्लेख करने की आवश्यकता होती है
जैसे हम जानते हैं कि एए नाम की कोई फाइल मौजूद नहीं है अब लिखें डब्ल्यूसी स्पेस aaaडबल्यूसी स्पेस एए सेल एरर देगा नो सुच फाइल ओर directoryऐसी कोई फाइल या निर्देशिका नहीं है
अब मानिए कि हम स्क्रीन पर एरर मेसेज नहीं चाहते
वो किसी अन्य फाइल में रिडाइरेक्ट कर सकते हैं
इसके लिए हम डब्ल्यूसी स्पेस ए ए ए स्पेस 2 राइट एंगल्ड ब्रेकेट एररलोग डोट टीएक्सटीडबल्यूसी स्पेस एए स्पेस 2 right एंज्ड ब्रैकेट errorlogटीएक्सटी कमांड दे सकते हैं
अब एरर टर्मिनल पर नहीं दिखेगी बल्कि यह फाइल एररलोग डोट टीएक्सटीफाइल errorlogटीएक्सटी में लिखी होगी
हम यह केट स्पेस एररलोग डोट टीएक्सटीकैट स्पेस एररलॉग डॉट टीएक्सटी कमांड से देख सकते हैं
अब मानिए कि केट स्पेस बीबीबी स्पेस2 राइट एंगल्ड ब्रेकेट एररलोग डोट टीएक्सटी कैट स्पेस बीबीबी स्पेस 2 right एंगल्ड ब्रैकेट errorlogटीएक्सटी यह कमांड रन करके मैं कोई अन्य एरर करती हूँ तो कमांड चलाने से पिछली एरर अधिलेखित हो जायेगी और नई एरर दिखाई देगी
देखिए केट स्पेस एररलोग डोट टीएक्सटी कैट स्पेस एररलॉग डॉट टीएक्सटी लेकिन क्या यदि हम सभी एररों की सूची चाहते हैं
इसके लिए हम यह कमांड चलाएंगे डब्ल्यूसी स्पेस एएए स्पेस 2 राइट एंगल्ड ब्रेकेट एररलोग डोट टीएक्सटी डबल्यूसी स्पेस एए स्पेस 2 right एंगल्ड ब्रैकेट ट्वाइस errorlogटीएक्सटी हम इसे केट कमांड का उपयोग करके जाँचते हैं
हमने देखा कि कैसे स्टैंडर्ड आउट स्टैंडर्ड एन स्टैंडर्ड एरर तीनों स्ट्रीम्स अलग से रिडाइरेक्ट और कुशलतापूर्वक प्रयोग होती हैं
लेकिन इस तथ्य की वास्तविक शक्ति का अनुमान तब लगा सकते हैं जब हम स्ट्रीमों का साथ में कुशलतापूर्वक उपयोग करें वो है भिन्न स्ट्रीमों को जोड़ना
इस प्रक्रिया को पाइपलाइनिंग कहते हैं
पाइप्स का उपयोग कमांड की श्रृंखला बनाने के लिए करते हैं
पाइप श्रृंखला में एक कमांड के आउटपुट को दूसरी कमांड के इनपुट से जोड़ता है
यह इस तरह दिखता है कमांड1 वर्टिकल बार कमांड2 हाइफेन आप्शन वर्टिकल बार कमांड3 हाइफेन आप्शन1 हाइफेन आप्शन2 वर्टिकल बार कमांड4 कमांड 1
कमांड 2 ऑप्शन 1
कमांड 3 ऑप्शन 1 - ऑप्शन 2
कमांड 4 मानिए कि हम वर्तमान डाइरेक्टरी निर्देशिका में उपस्थित डाइरेक्टरिसनिर्देशिकाओं और फाइलों की संपूर्ण संख्या जानना चाहते हैं
हम क्या कर सकते हैं
हम जानते हैं कि एल एस स्पेस माइनस एल एलएस स्पेस माइनस ल वर्तमान डाइरेक्टरी की सभी फाइलों और डाइरेक्टरिस निर्देशिकाओं की सूची बनाएगा
हम एक फाइल एल एस स्पेस माइनस एल राइट एंगल्ड ब्रेकेट फाइल्स डोट टीएक्सटी एलएस स्पेस माइनस ल right एंगल्ड ब्रैकेट filesटीएक्सटी के लिए आउटपुट रिडाइरेक्ट कर सकते हैं
केट स्पेस फाइल्स डोट टीएक्सटीकैट स्पेस फाइल्स डॉट टीएक्सटी चलाएँ
अब प्रत्येक लाइन फाइल और डाइरेक्टरी के नाम से है
इसलिए यदि हम इस फाइल में संपूर्ण लाइनों को मापते हैं हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए फाइल्स डोट टीएक्सटीfilesटीएक्सटी का उपयोग कर सकते हैं
इसको हम डब्ल्यूसी स्पेस माइनस एल फाइल्स डोट टीएक्सटीडबल्यूसी स्पेस माइनस ल फाइल्स डॉट टीएक्सटी कमांड का उपयोग करके कर सकते हैं
हालाँकि यह हमारे उद्देश्य को पूरा करता है पर वहाँ कुछ परेशानियाँ हैं
पहले हमें एक मध्यवर्ती फाइल फाइल्स डोट टीएक्सटी चाहिए
यदि पहली कमांड अधिक डाटा प्रस्तुत करती है तो यह व्यर्थ में डिस्क मेमरी नष्ट कर या कम कर सकती है यदि हम कई कमांडों की श्रृंखला बनाना भी चाहते हैं यह पद्धति धीमी है
हम इसे पाइप्स का उपयोग करके काफी आसान कर सकते हैं हम एल एस स्पेस माइनस एल वर्टीकल बार डब्ल्यूसी स्पेस माइनस एल एलएस स्पेस माइनस ल वर्टिकल बार डबल्यूसी स्पेस माइनस ल लिखते हैं
और हम अधिक सहूलियत के साथ वही परिणाम पा सकते हैं
एल एस कमांड से आउटपुट डब्ल्यूसी कमांड के लिए इनपुट के रूप में जाता है
हम पाइप्स का उपयोग करके कमांड की लम्बी श्रृंखलाएँ भी जोड़ सकते हैं
पाइप्स का एक सामान्य उपयोग मल्टीपेज डिस्प्ले प्रदर्शन पढ़ने के लिए किया जाता है
सीडी स्पेसयूज़र बिन सीडी स्पेस usrबिन टाइप करें अब हम बिन डाइरेक्टरी में हैं
अब एल एस एल चलाएँ हम आउटपुट को सही से नहीं देख सकते
लेकिन यदि हम इसे अधिकता के लिए पाइप से जोडें हम कर सकते हैं
सूची के माध्यम से स्क्रोल करने के लिए एंटर दबायें
इससे बाहर आने के लिए क्यू दबायें
यह कुछ कमांड थे जो हमें फाइल में काम करने के लिए मदद करती हैं
कई अधिक कमांड हैं
हमने देखा के इसके अलावा प्रत्येक कमांड जिसके कई अन्य पर्यायऑप्शन है
मैन कमांड का उपयोग करके उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ
कमांड्स को सीखने का सही तरीका है उनका बार बार उपयोग करना
यह मुझे इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर लाता है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
इस पर अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है